पीले रंग का काउंटर टेबल है गोल्डन रंग की लाइट है।

सफेद रंग के कप में चाय पी रहा है काले रंग का टेबल रखा हुआ है।

एक बच्चा स्लाइड पे झूल रहा है सफेद काले रंग के कपड़ों--

फिरोजी सफेद रंग का घर है।